जिसमें अह फोर फ्लोर्स हैं फर्स्ट फ्लोर में आगे शटर्स वगैरह लगी हुई हैं।

और सामने में अह ये शायद कोई गार्डन सा कुछ है ये पिक्चर्स के पिक्सेलस थोड़े खराब है।

जिसके माउथ से पानी बह रहा है और ये स्ट्रक्चर पूरा ग्रीन कलर के ग्रासेस में कवर्ड है सामने में एक सीमेंटेड डियर है।

दिवाल पे अ बहोत सारे डां अ जो है क्लासिकल डांसर्स उनकी पिक्चर्स लगी हुई है ऍन्ड फेसेस ब्लर करा दी गई है।

एंड गोल्डन प्लेटेड में ऊपर में कुछ है।

और एक जो लेडी है उन्होंने ग्रीन कलर की साड़ियां और ब्लू कलर के ब्लाउज ले रखा है।

ये किसी जंगल के बीच में लोकेटेड औ नदी टाइप का है जहां पे पत्थर वगैरह बड़े बड़े से हैं जिनके बीच में पानी ठहरा हुआ है।

एंड टेंट के बाहर जो लोग हैं वो लोग चेयर्स में बैठे हैं।

जो ट्रैक है वो रेड कलर में है और जिसमें व्हाइट लाइंस मार्क्ड है।

छोटा सा अ डेस्क टाइप का कुछ बनाया है जिसमें वह जमीन में बैठकर पढ़ रहा है।

पास ही में एक बेसिन है और वो रूम के जमीन में बैठा है कुछ भी एक छोटा सा कुछ अ कपड़ा बिछाया हुआ है यहां जो चार्जिंग प्वाइंट --

सामने ही एक अ रिक्शा है जिसके बाजू में दो कपल्स हैं जो कहीं तो जा रहे हैं बैग ले के।

वहां आगे एक ऑटो जा रही है। मेन रोड से एंड एक टेंपो खड़ी है बाहर।

लाइक यहां पर एक कुछ सा किंगडम टाइप का गेट सा बनाया गया है। उसमें स्टेज पर बहुत सारे लोग हैं।

स्ट्रीट लाइट जो है वो सारी जड़ रही है लाइक जो मेरी लाइट है।

एंड जो बादल है उन्होंने बहोत अजीब सी स्ट्रक्चर ले रखी है।